इंडियन बैंक दिखाई दे रहा है जो मुजफ्फर पुर शाखा का है ये मुजफ्फर पुर का ब्रांच है ।

बहुत ही बड़ी और खूबसूरत मन अ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके अगल-बगल ही बहोत ही खूबसूरत बिल्डिंग हैं ये बिल्डिंग की ऊंचाई बहोत ही ज़्यादा लंबी है।

इसपे तीन डोलफिंस बने हुए है नीचे पत्थर की कलाकारी हुईं हैं पानी है बा_हा साइड में हरे-भरे घास है ।

और एक बाइक लगी हुई है पल्सर की बाइक । बस से हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी शहर जा सकते हैं।

ये एक बोहोत ही बढ़िया व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जैसे कि एक फैक्ट्री होती है।

मोटरसाइिकल रिपेयरिंग सेंटर । यहाँ पे हम लोग कि गाड़ी में कोई खराबी हो तो हम अपना गाड़ी बनवाने जा सकते हैं।